यूको बैंक का लॉगो लगा हुआ है बना के उसके बगल में एक पेड़ दिख रहा है बहोत लंबा-सा।

एक दिवार वहाँ दिख रहा है जहाँ पे दोनों साइड ये गमला है बड़ा-बड़ा गमला है फूल लगा हुआ है रेड कलर का करपेट बिछा हुआ है। ने एक औरत झाड़ू लगा रही है एक न --

आ ज मोटर साइकिल रेपाइरिंग सेंटर है हमारे यहाँ सभी फोर स्टॉक एवं टू स्टॉक गाड़ी का रेपाइरिंग किया जाता है ।